वो जैसा की हम देख रहें हैं। दोस्तों यह काफी बड़ा जिम है। जहाँ पर एक - आ लड़का जो है। एक्सरसाइज कर रहा है और सामने एक और लड़का है जोकि वो भी किसी चीज़ की एक्सरसाइज कर रहा है। पीछे एक ही लडका है। जो की मोबाइल पे बात कर र --

जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यह काफी बड़ा बगीचा है जहाँ पर अ कुछ पेड़ की जो है पेड़ अटके हुए है जो कि पौधे हैं जिनको और यहाँ पर एक आदमी का हाथ जो है जिसके जिसके हाथ में जो है अमरूद है।

दोस्तों ये जो है बांस के बने हुए हैं कुछ टोकरी भी रखी जिनमें हम सब्जी वगेरा वगैरह भी रख सकते है रोटी वगेरा भी रखते हैं सामने देखो --

तोरी है लोकी है खीरा है गाजर है शिमला मिर्च है और धनिया है करेले भी हैं। यहाँ पर वो बैंगन भी है बोहोत सारी सब्जिया हैं यहाँ पर।